इसीलिए ए.टी.एम. से भी हमें काफी लाभ मिलता है जोकि हम कभी भी पैसे निकाल सकते हैं इसमें से।

और ये पानी हमें काफी हानिकारक पहुंचाता है जो कि ये कई दिनो का बासा पानी है जो कि इसमें घुसने से इनमें काफ़ी बीमारियां भी उत्पन हो सकती हैं।

और ये गाड़ी पार्किंग में लगाई जाती है। आपकी गाड़ी चोरी भी नहीं होगी सेफ सही सलामत खड़ी होती है। पार्किंग इसीलिए बनाई जाती है और पार्क --

जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सामने एक खडंजा दिखाई दे रहा है जिस पर ईंट बिछी हुई है। इंटरलॉक यानि पत्थरों से बिछी हुई है ये काफी सफाई और साफ दिखाई दे रही है जोकि इससे हमें काफ़ी फायदा होता है। यहाँ गंदगी नहीं होती है।

जैसे कि हम अपने सामने देख रहे हैं। एक नदी आ रही है। जिसके ऊपर से ब्रिज निकाला गया है। ये ब्रिज इसलिए निकाला जाता है जो कि नदी पार करने में आसानी हो इस --

और ये रोड भी दिखाई दे रहे हैं। ये काफी अच्छे हैं। ये तो हमारा शहर ही दिखाई दे रहा है।